ये एक इंडियन रेलवे स्टेशन है जहां पर प्लेटफॉर्म सात पे एक ट्रेन रुकी हुई है लोग बैठे हुए हैं।

बैटरी की सवारी गाड़ियां बनाई जाती है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बकवास गाड़ियां हैं।

यह एक हवा भरने की मशीन है जो कि एच_पी पेट्रोल पंप पे लगी हुई होती है।

जोकि आर_के स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है यह जगतपुरा में है चारों तरफ बाउंड्री है टाइले है।

जो की सी_के बिरला हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती हैं यह जयपुर मे है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें टेबल है टेबल पर पड़ा एक गिलास है जो की कांच का है।

फुटपाथ है फुटपाथ पर चलने के लिए टाइलें लगी हुई हैं और नीला नीला आसमान है।

रेलिंग नीले रंग की कारपेट पेड़ पौधे है आसमान और शांति है।

यह एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर--

हरा भरा मैदान है जहां पर लेडिजे अपना नृत्य कर रही है।

नदी के दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ हैं।